मूर्ती दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक व्हाईट कलर की है।

साथ मे ही यहां पर हमें दिख रहा है बड़ा सा पेड़--

सामने कुछ डूबता हुआ सूरज येलो कलर का है।

टेबल्स जो ब्राउन कलर का है सामने ही--

कुछ लोग यहां पर दिख रहे है ग्रीन कलर का कार्पेट दिखाई दे रहा है कुछ व्हाइट कलर की--

रात में ही हमें ग्रीन कलर की बडी बड़ी घास दिखाई दे रही है।

बोर्ड दिख रहा हैं जिसमें व्हाइट कलर से लिखा हुआ हैं।

रेड कलर की दीवारें बिल्डिंग की दिख रही है।

ब्राउन कलर की हैं सामने तीन लोग--

कुछ बड़े बड़े कांच वाले खिडकियां हमें दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें बहुत सारी बसेस दिखाई दे रही है।

दिख रहे हैं कुछ नाव जैसी हमें--